जिसके द्वारा लोगों के मीट और बिरयानी खाने वालों के लिए यह जगह दर्शाई जा रही है।

ये तस्वीर एक एग्जामिनेशन सेन्टर की है जहां पे कई सारी कुर्सियां और कई सारी कंप्यूटर लगे हुए है जो ऑनलाइन एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होते हैं।

और सारे लोग अपने-अपने घरों में बैठे हुए हैं तथा यह एक गराज का नज़ारा है।

ये तस्वीर एक टूटी हुई गाड़ी की है जो की एक गैराज में रखी हुई है की पार्ट्स को अलग-अलग निकालकर उसका उपयोग में लाया जा सकता है